ए- एक जेंट्स कपड़ों की शॉप है यहाँ पर आपको टी- शर्ट्स नजर आ रही है ऑरेंज व्हाइट ब्लू ब्लैक रेड --

और पन्नियों में नींबू रखे हुए हैं टमाटर रखे हुई हैं गाजर रखी हुई है भाटा रखी हुई है चार बोरियां रखी हुई है।

ये एक मैदानी इलाका में एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है साथ एक हैलमेट पड़ा हुआ है यहाँ पर कुछ पत्थर दिखाई दे रहे हैं और हरी-हरी--